ये एक मंदिर का फोटो है। यहां पर काफी सारे लोग आते हैं और यहां पर पूजा करते हैं और इनकी श्रद्धा है कि यहां पर जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है।